और एक तौलने वाला मशीन रखा गया है।

इसमें काफी सारे लोहे के टेंट लगाए गए हैं।

इसमें अंदर की साइड में दो कुर्सियां रखी हुई नजर आ रही है।

और काफी सारे काले कलर के कुर्सिये लगाए गए हैं।

और ऊपर की छत पे काफी सारे लाइट --

बाहर में काफी सारे पोस्टर लगाए गए हैं।

और नीचे में एक क्यू_आर कोड भी नजर आ रहा है।

टेबल के ऊपर पानी के बोतल रखे गए हैं।

यह एक लाइट के दुकान का दृश्य है।

जिसमें चार व्यक्ति लोग नजर आ रहे हैं।

और ऊपर की छत में काफी सारे लाइटे लगाए गए हैं।

इसमें पीछे की साइड में एक मूर्ति लगाई गई है।

यह एक खुले मैदान का दृश्य है।

इसमें काफी सारे व्यक्ति लोग नजर आ रहे हैं।

इसमें एक बड़ा सा पंडाल लगाया गया है।

जिसमे एक शीशे के रेक में काफी सारे मिठाइयां रखी गई है।

यह एक छोटे से नाले का दृश्य है।

यह एक पेंट के दुकान का दृश्य है।

और लकड़ी का रैक बनाया गया हैं।

और पेंट के डिब्बो का कलर काफी सारा है।

इसमें दो पेट्रोल की मशीनें लगाई हुई नजर आ रहीं हैं।

यह एक बस स्टैंड के अंदर का दृश्य है।

और पीलर पे काफी सारे पोस्टर लगाए गए है।

और शीशे के दरवाजे लगाए गए हैं।

यह एक साड़ी के दुकान का दृश्य है।

उसने वाइट कलर का शर्ट पहना है।

यह एक खुले मैदान का दृश्य है।

नीचे के साइड में काफी सारे बड़े छोटे पत्थर नज़र आ रहे हैं।

और अंदर की साइड में दो व्यक्ति बैठे हुए नजर आ रहे हैं और बाहर एक व्यक्ति नजर आ रहा है।